यहां मुझे एक नदी दिखाए दे रही है आजू-बाजू बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और एक व्हाइट व्हाइट अंदर मंदिर घर सा दिखाई दे रहा है और बाहर रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही --

कुर्सी रखी हुई है। जिसमें बहुत सारे कलर है और बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कपड़े कांच --

इसमें मुझे टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि पिंक कलर का है इसमें बहुत सारी कुर्सियां

उस पार एक बाउंड्री है और एक खंबा लगा हुआ है और एक घर दिखाई दे रहा हल्का ब्लू-ब्लू कलर --

येलो (yellow) कलर (colour) का एक गोल सा म डिजाइन बनी हुई है टेंट (Tent) मे और फूल लगे हए हैं रेड (Red ) कलर के बहुत सारे नीचे की ओर।

इस इमेज में मुझे पानी का बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है और आजु बाजु काला काला दि --

इस इमेज में मुझे टेंट लगा दिखाई दे रहा है। दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है। जिन पे आदमी --

इस इमेज में मुझे बहोत बड़ी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। समेन्ट के तीन डिब्बे जैसा कुछ बाहर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक टावर दिखाई दे रहा है और पेंड़ - पौधे दिखाई दे रहे हैं और जीप दिखाई दे रही है। थोड़ी सी --

थोड़े हरे हरे पत्ते और काला काला दिखाई दे --